एक बिल्डिंग दिख रही है जो की उजले कलर की है ठीक बिंग बिल्डिंग के बगल में --

कुछ चपाती रखी गई है जो कि आलू की चपाती है जो की बहुत स्वादिष्ट लग रही है। ठीक इसके नीचे एक लकड़ी का टेबल टेबल है जिसके ऊपर --

प्लेट में रोटी रखी गई है।

सामने की ओर नीला-नीला कलर का एक झील है झील के ऊपर बहुत सारी खेलने का चीज़े लगाई गई है।

उसके पीछे एक बहुत सुंदर सा पार्क दिख रहा है जो की हरा-भरा है।